और इस तस्वीर में मुझे कुछ व्यक्ति भी दिखाए गए हैं।

और यहां पर मुझे लाइट पोस्ट दिखाया गया है।

और अंदर में चिप्स भी मुझे दिखाया गया है।

और कुछ घरे भी दिखाया गया है।

इस पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं और मुझे इस तस्वीर पर सैंडल भी रखे हुए दिख रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर पर कुछ महिलाएं दिखाए गए हैं।

पीछे ही मुझे दीवार दिखाया गया है जिस दीवार पर कुछ पेंटिंग भी दिखाया गया है।

और दो झोपड़ी भी दिखाया गया है।

उसके पास में ही मुझे एक घर भी दिखाया गया है और खुला आसमान दिखाया गया है।

और एक चेयर भी मुझे दिखाया गया है जो बालकनी में रखा हुआ है।

और मुझे इस तस्वीर पर फूल भी दिखाया गया है।

मुझे इस तस्वीर पर एक नदी दिखाया गया है।

मुझे इस तस्वीर पर एक खुला आसमान दिखाया गया है।

इसके बीच में ही एक छोटा सा घर दिखाया गया है।

नीचे ही मुझे कुछ सीढ़ी भी दिखाई गई है।

और कुछ परफ्यूम दिखाए गए हैं और कुछ सॉक्स भी दिखाए गए हैं।

जिसके पास में ही एक छोटा सा ग्राउंड दिखाया गया है।

और कुछ घास दिखाया गया है और कुछ रोड दिखाई गई है।

इस तस्वीर पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

के अंदर मुझे एक रैक दिखाया गया है और एक कुर्सी दिखाया गया है।

ये इस तस्वीर पर एक खुला आसमान दिखाया गया है कुछ पहाड़े दिखाया गया है।

इसके पास में ही मुझे एक सी सी टी वी कैमरा भी दिखाया गया है।

और मुझे एक छोटा सा ग्राउंड दिख रहा है।